लोहे की चेन दोनों तरफ से डाल रखी हैं।

इस तस्वीर में कई लोग खड़े हैं।

साथ में एक टेबल है सब पानी की बोतल उसके ऊपर रखी गई है।

इस तस्वीर में लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

साथ में एक रास्ता दिखाई दे रहा है उसके ऊपर फर्श डला हुआ है।

साथ में बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है एक कुर्सी दिखाई दे रही है खंभे के ऊपर एक तार दिखाई दे रही है जाती हुई।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ के बीच में एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

सड़क के बीच में एक बस स्टॉप है बस स्टॉप के बाहर कई लोग खड़े हैं सारे लोग बस का वेट कर रहे हैं एक बिजली का खंभा है।